एक गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है | एक खंभा दिखाई दे रहा है जिसमें लाइटिंग लगी हुई है |

पोस्टर लगा हुआ है और पूरी दीवाल में टाइल्स लगे हुए हैं। नीचे भी टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रहे हैं।

एक पेड़ है। पेड़ में एक आसमान में एक सूरज दिखाई दे रहा है। बाउंड्री दिखाई दे रही है।

एक स्कूल की बाउंड्री है दो मंजिल स्कूल है दोनों मंजिल में परछी है स्कूल की |

एक गार्डन है। गार्डन में पूरी लोहे की जाली लगी हुई है और बीच-बीच में लोहे के खंभे लगे हुए हैं। एक एक बड़ा पेड़ है जिसमें कुछ लकड़ी भी दिख रही है और काफी सारी डगालें दिखाई दे रही --